यह एक ऑटो खड़ा हुआ है और उसके पास में एक ई रिक्शा भी है और वहां पर --

आलू रखे हुए हैं और वहां पर बहोत सारे आलू के कट्टे आलू कट्टे में भरे हुए है तौल-तौल के बहोत सारे --

यहाँ तीन चार आटो खड़े हुए है बस वगैरा भी खड़ी हुई है हमें बहोत ज्यादा ट्राफिक हो रहा है और यहां पे --

और भी मंगलसूत्र वगैरा पायजेब वगैरा लेजा टूटी के रबर अंगूठी गले का हार --

हैं मैप इन इंडिया के नाम से है ये साइंस में मोर --

ये एक बंजारन दुल्हन साड़ीस की दुकान है यहां पर साड़ी वगैरा नेट की साड़ी--

दो तीन मतलब पेट्रोल डीजल सी_एन_जी वगैरह यहां पर सब भराई जाती है।

की आइसक्रीम है यहां पर जैन आइसक्रीम पार्लर है यहां पर कुल्फी वगैरह मिलती है आइसक्रीम सॉफ्ट टी वगैरह चॉकलेट वगैरह यहां सब मिलती है और --

और यहां पर बहोत भीड़ भी लगी हुई है सब्जी की दुकान के पास में और यहां पर --

के नाम से शोरूम है रुग्णता ऑटोमोबाइल्स जयपुर में है यहां पर कार वगैरह मिलती हैं और उसके ऊपर एक--

ये एक पेट्रोल पंप है यहां एच_पी का पेट्रोल पंप है यहां पर लोग पेट्रोल डीजल भरवाने आये हुए है।

बहोत सारे फूलों के गुलदस्ते नकली फूलों के गुलदस्ते भी वहां रखे हुए हैं ये पूरा मार्केट बना रखा है यहां पर यहां पे हर चीज मिलती --

और ये मेट्रो आज कल बहुत सारी जगहों चलती है ये मेट्रो बहुत फास्ट भी चलती है मेट्रो भी अच्छी जगह अच्छी हैं।

यह एक नजारा दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन के पास का वहां पर बहोत सारे --

गणेश मंदिर वहां पर एक आदमी बाहर बैठा हुआ है चौकीदार और मंदिर मे जरा आया हुआ है और ऊपर भी बहोत सारे मंदिर --